कुरकुरे और चीजे बहोत ही सारी खाने पीने की--

पी एंड बी करके बीयर बार है जहां पर आप जा सकते हैं एंजॉयमेंट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।

साथ मे एक विंडो है और पिलो भी है बेड शीट है और साथ मे एक वॉर्डरोब --

हमारे सामने है एक स्कूल और यह है एक स्कूल का छोटा सा पार्ट जो की--

तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है एक बहोत ही बड़ा सा स्कूल जहां पर--

साथ में एक ट्री है वाइट कलर का स्कूल है।

जो की बहोत ही ब्यूटीफुल हैं और एक दम क्लीन है साइड साइड ग्रीनरी भी बहोत ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन दे रही है इसको।

और विश्व के लिए और अपना माइंड रिलैक्सेशन करने के लिए।

और बहोत ही सारे वहीकल्स यहां पर प्रोवाइड हो जाते है आप यहां से बाय कर सकते है।

लग्जरी ड्राइव्स कार्स के नाम से है।